ये दुकान में कुछ सामान भरा है ये दुकान टायर्स की लग रही है पीछे एक बल्लब जल रहा है जिसमे कोई भगवान की मूर्ती लगी हुई है।

जो ऊपर एक छतरी बनी हुई है जो कि वाइट कलर की है। इसके स्तंभ येलो कर के हैं। आइट साइड में --

ये अपने हाथ को अपने पाओ से पा उंगलीओ को अपने पाओ से पकड़ रहे है।

त खराब हो चुकी है। इसके अलावा के ऊपर कुछ आसमान जैसे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ एडिट किया गया है।